इस फोटो पे फूल नजर आ रहे हैं।

इस फोटो में मुझे बेकरी नजर आ रही हैं।

इस फोटो पे केक नजर आ रहा है।

इस फोटो में हरियाली नजर आ रही है इस फोटो में स्विमिंग पूल नजर आ रही है।